ये एक अ रूम है जहाँ पे चेयर पे एक इंसान बैठा हुआ है जिसके सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं |

पानी में नीली डार्क लाइन बनी हुई है और उसके अगल-बगल दीवार भी बनी हुई है।

जिसने नील कलर की जीन्स पहनी है और काले और क्रीम कलर की टी-शर्ट पहनी है | बिल्डिंग का हल्का गुलाबी और लाल कलर --

दुकानें लगी हुई हैं ऊपर कंस्ट्रक्शन मकान बना हुआ है लाइट के तार दिखाई दे रहे हैं।